यहां पर एक बच्चे को प्राइस मिल रहा है और कुछ लेडिसे भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने एक आइसक्रीम साइकिल का ठेला दिख रहा है।

इस इमेज में सामने कुर्सी टेबल दिख रहे हैं।

इस इमेज में सामने मंदिर दिखाई दे रहा है।

और सफेद रंग के दीवाले भी बाउंड्री दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे सामने यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

यहां पर आसपास पेड़ भी नजर आ रहे हैं और यहां पर कुछ पंच --

जिस पे मानसनोवर स्टेशनरी लिखा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने एक बस दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने अल्बर्ट हॉल दिखाई दे रहा है यहां सड़क भी नजर आ रही हैं।